पर ये ही लिनटेर डलता है और ये काफी मजबूत लिनटेर ढलेगा क्यूंकी ये है आरसीसी का लिन्टर ढल रहा है।

यह इंसानों को और इस तालाब में गिर जाए इंसान तो यह मार देता है उनकों।

पोस्ट ग्रेजुएशन की जाती है। यह एक गोली है और यहाँ पर लैब का कोर्स भी किया जाता है और यहाँ पर --

यहाँ पर अनेक व्यक्ति आते है और फल लेकर जाते है जैसे केला सेब अनार अंगूर --

और एक मौत का कुआँ चल रहा है सामने जिसमें बाइके चलती हैं और यहाँ पर काफी सारे लोग हैं।

काफी सारी भीड़ लगी है और यहाँ पर अ एक अंकल जी हस रहे हैं।

नीट आई आई टी जेइइ और --

एक मार्केट है और यहाँ पर इंडियन ओवर ओवरसीज बैंक लिख रखा है और यह इंडिया में स्थित है।

और यहाँ पर एक गाड़ी खडी है वाइट कलर की सफ़ेद यहाँ पर कई सारे ट्रांसफार्मर रखे हैं। जिनमें बिजली आती है और बिजली को ट्रान्सफर कर --

ये एक गार्डन है और यहाँ पर बोहोत सारे पेड़ लग रहे हैं और यहाँ पर एक बेंच रखी है। जिस पर --

फूल है और यहाँ फूल बेच रहे हैं। कौन है?